यहा एक जिम का चित्र है जिसमे एक टेबल दिख रही है टेबल के ऊपर शील्ड रखी हुई है।

यह चित्र जंगल का है जहा पर कुछ लोग जा रहे है जिन्होने रंगीबेरंगी टी शर्ट पहनी है।

पीछे की ओर बहुत सारे कपड़े रखे हुए है और दीवार दिख रही है जो की सफ़ेद रंग की है।

नीचे कपड़े हॅंगर मे लटके हुए है।

याहा चित्र कार्यालय का है जहाँ पर कॉम्पुटर दिखाई दे राहा है जो चल रहा है चारो तरफ किताबे फाइल पडी हुई है।